ये बेगुसराय हेयर पार्लर है और यहाॅं पर हर तरह के हेयर कटिंग होते हैं बाल बनते है यहाॅं पर फेसियल होता हैं कलर होता है और ये बहोत ही अच्छा पार्लर है।

यहां बहुत बड़ा रास्ता है यहां पे कुछ व्यक्तिया जा रहे है लड़की ये बहुत बड़ी टंकी है यहां बस है और ये बस स्टॉप लग रहा है क्योंकि वहां बहुत सारी बस रुकी हुई है कुछ यहां पे ठेले है।

किसी का घर बना हुआ है ये घर में एक झालर दिख रही है इसके बगल में हौंडा की कार है यहाँ पर क शोरूम में कार में गाड़िया मिलती है तथा उसकी कार भी है।

और यहाॅं के चारों तरफ मिट्टी हीमिट्टी हैं खुला आसमान है। यह बोहोत ही सुंदर और सुखदायक है देखने मे बोहोत ही आस --

और यहाॅं पे बड़े-बड़े छोट बड़े पिलर हैं और यह बोहोत ही आन्दंदित और सुखदायक है।

एक झोपड़ी है जो नीले आसमानी कलर की है दो कमरे है।